कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं आसमान नीला है।

सामने हमें कुछ घर नज़र आ रहे हैं आसमान में बादल दिख रहा है।

सामने हमें लोग नजर आ रहे हैं बिल्डिंग पर रेलिंग लगी है।

कोने में थोड़ी सी घास पड़ी हुई है।

ये मस्जिद अभी बन रही है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग खड़े हुए है सामने एक बड़ा काँच नजर आ रहा है।

कुछ कार नज़र आ रही है।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

कुछ कुर्सियां नजर आ रही हैं।

आसमान में बादल दिख रहे हैं।

काला दरवाजा दिख रहा है।

एक आदमी ने गमछा पहना हुआ है।

एक फार्म हाउस दिख रहा है।

इस चित्र में एक लड़का बैठा हुआ है।

पीछे हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

एक लड़का हजाम बनवा रहा है।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

काफी सारे कपडे जमे हुए हैं।

छोटी घास नजर आ रही है।

काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक लड़के ने काली शर्ट पेहनी हुई है।

काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

घास नजर आ रही है।